यहां पर सामने एक प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है।

और यहां पास सामने एक स्कूल भी दिख रहा है।

और पेड़ में हल्की फुल्की हरियाली दिखाई दे रही हैं।